वृक्ष रोपण हो रहा है यहाँ पर लड़की सब वृक्ष और लड़के सब भी है।

बहुत लड़के भी है बहुत लड़की भी वृक्ष गाछ को रोप रही है गाछ उगाना हमारा देश का बहुत --

सजाया गया है बल अ अ अम अनोखी तरह का बलून है ।